यहाँ पर एक नजर आ रहा है।

छत में लाइट नजर आ रही है।

उसका रंग नीला दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान नज़र आ रहा है।

आसमान का रंग सफ़ेद नजर आ रहा है जिसमें एक बोट दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक पानी का तालाब नज़र आ रहा है जिसमे पानी नज़र आ रहा है।

इधर साइड में दो लड़के बैठे हुए है उनके पीछे गेट नजर आ रहा है गेट लोहै का दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ एक सब्जी का बाजार दिखाई दे रहा है जिसमें सब्जियाँ नजर आ रहै है एक आदमी बैठा हुआ है उसने सफ़ेद रंग का शर्ट पेहना हुआ हैं।

यहाँ पर सड़क नजर आ रही है जहाँ बहुत सारी जनता दिखाई दे ही है ऊपर आसमान नजर आ रहा है जिसका रंग काला दिखाई दे रहा है यहाँ --

यहाँ पे एक सैलून की दुकान दिखाई दे रही है जिसमे एक लड़का बालो को बनवा रहा है कटिंग --

एक खिड़की दिखाई दे रही है खिड़की में कांच नज़र आ रहा है कांच का रंग सफ़ेद है।

एक मिर्ची जमीन पर रखी हुई है जमीन का रंग भूरा है एक डलिया नजर आ रही है डलिया प्लास्टिक की है उसका रंग नीला है।